यह एक मिठाई की दुकान है।

और दो लाल रंग की कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां पर एक आदमी कॉफी बना रहा है।

और अ बराबर में टीन भी नजर आ रही है।

यहां पर बहोत भीड़ नजर आ रही है।

पर एक बहुत बड़ा रोड भी दिखाई दे रहा है।

और सोफे भी दिखाई दे रहे है।

और यहां पर लकड़ी के फ्रेम बने हुए है।